एक प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें तीन चार व्यक्ति--

यहा पर जैसे पाउडर क्रीम --

और व्यक्ती मेहनत कर रहे हैं।

यहा दो ब्वॉयज ओर एक सफ़ेद टी --

कुत्तों के लिए अलग अलग का खाना है जिस किसी को अच्छा लगे वह खरीद लो।

यहां पर पानी निकल रहा है।

यहा एक जे_सी_बी है जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर खड़ी है।

यह एक मैनेजर है जो इनको समझा रहा है ऐसे काम करते है।

और एक चेयर भी रखी हुई है।

क्रय केंद्र चरखी दादरी इसका उद्घाटन माननीय श्री ने किया था।